एक आदमी जो है वो खड़ा है पीछे दीवार पर कुछ फोटोस लगी हैं।

एक लड़का उसके शेविंग कर रहा है।

एक आदमी जो है वो बाहर झाड़ू लगा रहा है।

और ग्रे पजामा पहना हुआ है।

इस तरफ दीवार पर कुछ अ पेंटिंग छपी हुई है।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

एक आदमी जो है वो झरने के पास खड़ा हुआ है।

और जिसमें ऊपर गोल छत जो है वो बनी हुई है।

इस तस्वीर में एक बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

टेडीस पड़े हैं। गुलाबी और ब्ल्यू कलर के चूड़ियां जो है हरे लाल पीली।

एक टेबल पर पानी की बॉटल और मोबाइल रखा हुआ है तथा एक टेबल पर एक बहुत बड़ी जो है वो मछली--

इस तस्वीर में एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

पीछे जो है वो कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

बाहर जो है वो अह अह छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।